एक दिवाल पर स्वच्छ सर्वेक्षण का बैनर बना हुआ नजर आ रहा हैं।

यह शोरुम टी_वी_एस कंपनी के थ्री का है इस पर बाहर बड़े बड़े कांच के गेट --

तरह तरह की एक्सरसाइज मशीनें डली हुई हैं तथा तीन चार लड़के भी इस जिम पर--

गेट के ठीक बाहर ही एक बड़ा सा झंडा भी लगा हुआ है।

बने हुए हैं तथा रैक पर बहुत सारी दवाईयें एक साथ--

तथा इसमें बहुत बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट भी लगी हुई नजर आ--

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा सा--

इस स्टेशन पर एक ट्रेन गाड़ी रुकी हुई है तथा इसमें बहोत ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही--

इस ऑफिस पर दीवाल के साइड एक बहोत ही लंबी सी टेबल --

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा--

गैलेक्सी गेम जोन है तथा इस पर बहोत ही बड़ा--